दिए गए चित्र में घर बनाने का काम चल रहा है।

तस्वीर में बड़े बड़े लाइटे नजर आ रही हैं।

दिए गए चित्र में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं।

तस्वीर के बीचो बीच दो ट्रेडमिल रखी हुई है।

और ट्रेन के आगे तीन लाइटें लगी हुई हैं।